ए दो नर्स और कम्पाउंडर मिलकर यहाँ पर काम कर रहे है।

और इसमें दो खिड़कियाँ है जैसे पार --

कोई न कोई हाथ धर के वृक्षों का --

ये फोटो एक सोनी --